'' काफी सारे लोग जो है नदी में जो है काफी बोटिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे है और सभी के पास जो-- ''